ओर यहा पर देखो बीच मैं कितना --

बच्चे भी हैं कुछ बड़े लोग भी हैं |

और एक स्कूटी भी खड़ी है | यह --